दो तीन डंडे दिख रहे हैं बालू चलने वाला समान दिख रहा है करकट दिख रहे है पेड़ दिख रहे हैं।

दृश्य में देख सकते हैं कि दो महिले--

पेड़ देख सकते हैं बादल देख सकते हैं उत्सव का माहौल है।

पर्दे देख सकते है एलो कलर के।

इस दृश्य में देख सकते हैं बहुत सारे आदमी है लेडिस है।

खुला मैदान देख सकते हैं।

ग्राउंड देख सकते हैं हरे भरे हैं।

कार्टून बनाया टाइप है।

एक बड़ा सा माल दिख रहा है बहुत सारे सामान दिख रहे हैं केले दिख रहे हैं केले बेचते हुए आदमी दिख रहे हैं।

रेड कलर का --

पोस्टर टंगा हुआ है अमन कलर का।

टेबल देख सकते हैं लोहे देख सकते हैं।

दिख रहे हैं अंदर काम हो रहा है।

अंदरम बहोत सारे समान दिख रहे है एक--

बहुत सारे कार्टून देख सकते हैं छोटे छोटे डिब्बे देख सकते हैं खेलने वाला समान है।

ये दृश्य में दिख रहा--

सीढ़ी दिख रहा है दो तीन बम्बे दिख रहे है।